--वायर वगैरा दिख रही हैऔर गाड़ी की नंबर प्लेट वगैरा दिख रही हैं यहां पर--

यहाॅं पर एक बस स्टॉप दिख रहा है यहाॅं पर एक बस खड़ी हुई है और यहाॅं पर कुछ लोग बस में चढ़े हुए हैं और कुछ लोग बस का वेट कर रहे हैं।

लोग गाना वगैरा गा रहे है यहां पर ए.सी. लगा हुआ है और ग्रीन कलर और रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ है और यहाँ पर लाइट वगैरा और पंखा वगै --

वो दिख रहा है यहाँ पर बहोत सारे मोबाइल बने हुए है और यहाँ पर एक चैनल गेट दिखा रहा है और यहाँ पर पत्ती वगैरा डली हुई है।

यहाँ पर एक मस्जिद दिख रही है वाइट और ग्रीन कलर की वहाँ पर स्पीकर भी दिख रहे हैं और यहाँ पर एक बाहर कुत्ता बैठा हुआ है कच्ची दीवाल दिख रही है यहाँ पर और रेड कलर की एक गाड़ी भी खड़ी हुई है।

ये मज्जिद के पास ही एक घर है। वहाँ टी.वी. का एंटेना भी लगा हुआ है और मस्जिद के पास चद्दर वगैरा भी लगे हुए हैं वायरिंग वगैरा भी दिख रहें --